यह पिक्चर में बोहोत ही सुंदर सजावट हुई है। सजावट में नीले रंग के कपड़ो का इस्तेमाल किया गया है।

रिक्शे के पीछे एक दुकान भी दिखाई दे रहा है।

कुछ गाड़ियां तथा ई-रिक्शा भी खड़े हुए है कुछ ऑटो रिक्शा चलते हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ मजदुर बैठे हुए काम कर रहे है कुछ मजदुर खड़े हो के काम कर रहे है ।

जमीन पर बहुत ढ़ेर सारी मिट्टियां भी पड़ी हुई है।

चर्च के बाहर कई सारे मोटर साइकिले तथा साइकिले खड़ी हुई है।

मैदान में छोटे-छोटे हरे घास भी है ।